तस्वीर में मछली की दुकान है मछली मार्केट है जहां पर बहोत से मछली बेचने वाले बैठे हुए हैं।

उस पुल पर दो लोग खड़े हैं।

जिसमें शैंपू पेस्ट ऑयल दालें अनाज--

ये किसी ऑफिस का दृश्य है जिसमें प्रति व्यक्ति सेक्शन बने हुए हैं।